घर का आगे रेलवे का पटरी है और घर के पीछे बहुत सारा पेड़ पौधा लगे हुए है।

दो अ रस्ता से दो टम टम अप डाउन कर रहे है रास्ता के साइड में एक बस रुके हुए दिखाई दे रहे है।

एक भेन पे एक सा एक मछली को रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक पीला कलर का टी शर्ट पहना हुआ एक आदमी खड़ा हुआ है।

पीछे में दो बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़की पार्लर में बैठ के फोटो खींच रही है।

पीछे बहुत सारा कॉस्म कॉस्मेटिक का आइटम रखा हुआ है।

इनका फ्लोर है रेड और ब्लैक कलर का फ्लोर देखने को मिल--

यह एक ऑरेंज और वाइट कलर का रूम देखने को मिल रहा है जो रूम में बार्बी का प्रिंट किया हुआ फेन लगा हुआ है।

ये एक नौका में बहुत सारे बहुत सारे अ इंसान बैठे हुए है और दो आदमी खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हुए है।

ऊपर से बहुत सारे चिरिया उर के जा रहे है और दूसरा दूसरा नौको में दो आदमी बैठे हुए है।

ये ठंडो में पहनने के पहनने लायक बहुत सारे जैकेट और पैंट रखे हुए।

शिप का आगे नफीसाजहां लिखा हुआ है यहां पे यहां पर बहोत बड़ा क्रेन दिखाई दे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर का छवि दिखाई दे रहे हैं जहां पे बहुत सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं और रंग बिरंगे चेयर दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी माइक ठीक करते हुए दिखाई दे रहे है और घर का पीछे एक दरवाजा दिखाई दे रहे है।

मैदान का सामने एक लाइट का पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक हाल का छवि दिखाई दे रहे हैं हाल में ग्रीन कलर का कारपेट बिछाए हुए हैं।

हॉल का अंदर बहुत सारे आर्केस्ट्रा के सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक मैदान का छवि दिखाई दे रहे हैं।

घर का अन घर का सामने एक पाइप लाइन का व्यवस्था किया हुआ है।

दुकान का कलर दुकान का कलर येलो है।

दुकान का ऊपर में बहुत सारे आदमी दो तीन आदमी भी दिखाई दे रहे--

मंदिर का साथ हि बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे देखने को भी मिल रहे है।

हमें एक लाल कलर का फूल का पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिसमें दो फूल लगा हुआ है।